यहां रंग बिरंगी लाइटों से तैयारी की हुई है।

ये एक सफेद रंग का--

यहां रंग बिरंगी लाइटें हैं।

यहां सजावट बहोत अच्छी है।

यह एक पार्क है।

मेज में दो चम्मच हैं।

यहाँ एक समंदर है।

यहां एक बड़ा घर है।

सभी एक्टिवा पेड़ की--

यहां शादी हो र--

यहां केरल होटल लिखा है।

वहां रोज सूरज चमक --

कमरे में खाना रखा हैं।

और नए बच्चे खेलते हैं।

यहां हरे घने पेड़ है।

नीचे कई गाड़ियां खड़ी हैं।

यहां एक पत्थर पर--